मार्केट है और मार्केट में वर्मा ऑप्टिकल है।

और उसपे बनी है रैबन के भी कुछ चीजें है एक बार आधी बटा वो लगता है सिगरेट पी रहे--

चार बास्केट भी पड़े हैं एक टोकरी है टोकरी के अंदर क्रीम लग रही है।

ये एक शॉप है स्वीट शॉप में--

और भी मिठाई है गुलाब जामुन भी है। ग्रीन कलर की भी है मिठाई है।

और लड्डू भी हैं और मिठाई भी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ।

मोटर्स लगे हैं वो पता नहीं क्या है और तीन बेंचेज भी है तीन चेयरे एक बेंचस हैं।

और एक पेड़ भी है पेड़ पे ग्रीन कलर के पत्ते हैं।

और अंदर उसके बहोत सारे आदमी औरत इकट्ठे बच्चे बैठे हैं।

ये एक मिस्थान बंदारा मतलब स्वीट्स एंड फास्ट फूड्स दूध रतन--

और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लग रहा है और फ्रेम है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फ्रेम है और ये ब्लैक कलर का ये बोर्ड सा पता नहीं क्या है।

बहोत सारे फ्लावर हैं येलो कलर के भी हैं ग्रीन कलर के भी है पिंक कलर के भी हैं वाव कितने तो बास्केट है इसकी अंदर।

ग्रीन फिरोजी ब्राउन ये पता नहीं क्या है।

लगता है ए_एन_एम जी_एन_एम का कोर्स कर रहें हैं।

पेट्रोल पंप हैं। पेट्रोल पंप में कितने पेट्रोल डालने वन-टू जो पंप है और दो आदमी खड़े सेल्फी ले रहे हैं।

ये थोड़ी मैरून शेड में आ जाती ट्रैक्टर का कलर रेड है।

और एक फोल्डर भी है।

यहां पे ब्लैक कलर के बादल ही बादल हैं लगता है प्लेग्राउंड है प्लेग्राउंड में चेयर हैं टेबल टेनिस वाला है यहां पे टेबल टेनिस खेला जाता है।

ये एक ऑफिस है जहां पे लगता है करवाई जाती है।

दो फैन लगी है फैन व्हाइट कलर का है ग्रास भी लगी है।